टूल भी दिखाई दे रहा है।

एक तीसरे आदमी का सिर भी नजर आ रहा है।

और सफेद रंग के परदे लगे हुए हैं सोफा के आगे फ्लावर पॉट्स रखे हैं।

ये एक मंदिर की तस्वीर है मंदिर में सजावट हुई है।

काले रंग के हैं दो बेड लगे हैं।

इस तस्वीर में लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही--

शिमला आस पास लोग दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें लिखा है कॉमर्शियल स्पेस अवेलेबल फॉर रिलीज ।

यहां पर बेंचेस भी नजर आ रहे हैं इन बैंचों पर एक आदमी और एक औरत की टांगे भी नजर आ--

रंगीन लाइटें नजर आ रही है।

इस घर का रंग नीला है।

नजर आ रही हैं और इसमें --

जिस पर ट्रॉफी के चित्र बने हुए हैं।

है और बहुत सी गाड़ियां भी नजर आ रही हैं।